एवं सामने से जाने का रास्ता नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक होटल आकाशदीप का है।

एक रंग बिरंगी संरचना दिखाई दे रही है।

जिस पर सुरेंद्रनाथ लिखा हुआ है एवं इस बिल्डिंग का कलर लाल एवं सफेद है।

सामने कुछ पुल भी नजर आ रहे हैं।

सामने बिल्डिंग की सीढ़ियां नजर आ रही है।

सामने के गेट खुले दिखाई दे रहे हैं।

झूले के सीढ़ियों के नीचे एक चप्पल रखी हुई है।

एवं स्टेज पर कुछ टीचरे स्टूडेंट्स और वॉचमैन खड़े हैं।

इस दृश्य में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें एस एस फ्रेश मार्ट का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य एक गैबोर हॉल की है।

एवं चार तकिए नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग के सामने से इसका दरवाजा दिखाई दे रहा है।